यह किसी प्रकार का वापिस दिखाई दे रहा है जिसके दरवाजे के आगे में कुछ लोग खड़े हुए है और कुछ लोग बैठे नज़र आ रहे है उनके किनारे में बहुत से स्कूटी भी खड़ी हुई है और बहुत लोग बाइक में है।

यह एक बैंक नज़र आ रहा है जिसके ऊपर में खादी भवन लिखाया हुआ है और नीचे पंजाब नेशनल बैंक उसके ऊपर में कुछ बैनर लगा जो लैपटॉप का भी लगा हुआ नज़र आ रहा है उसके नीचे में बाइक है।

यह एक प्रकार का रूम दिखाई दे रहा है जिसके चारों ओर तरफ पर्दे लगे --

यह एक प्रकार के आटो है जो कि सड़क के बीचो-बीच में खड़े हुए नजर आ रहे हैं।

यहाँ पे एक नदी है जो की बीच में है और उसका पानी मटमैला दिखाई दे रहा है उसके किनारे में एक छोटा सा झोपड़ी दिखाई दे रहा है जो की बहुत ही सुंदर है।

कुछ ऑटो आते हुए प्रतीत हो रहे हैं कार दिखाई दे रहे हैं जगह-जगह पे बिजली के खंभे तार लगे हुए हैं और लाइट सब की व्यवस्था है उसके बगल में एक बहुत बड़ा बिल्डिंग भी अच्छे से दिखाई दे रही है।

वहाँ पे एक घर दिखाई दे रहा है अर्थात् वह मंदिर जैसे दिख रहा है उसके ऊपर में चोंगा सब फिट है और ऊपर में टैंक भी है और दो बच्चे चलते हुए नज़र आ रहे है दरवाजा भी लगा हुआ है बांस भी लटके हुए दिखाई दे रहे--

यहाँ पर एक पत्ते है जोकि बहुत ही प्यारा है उसके ऊपर में बहुत ही सुंन्दर फूल खिला हुआ नज़र आ रहा है उसकी पंखुड़ी मानो बहुत ही प्यारी है और वह लाल रंग की हैं ।

कुछ लंबा सीढ़ी भी बना हुआ है और शटर सब बंद पड़े दिखाई दे रहे है और कुछ दरवाज़ा खुला हुआ नज़र आ रहा है।

और उसके किनारे में बहुत सारे बोरे भी लगे हुए है और ज़मीन सब अँधेरा-अँधेरा दिखाई दे रहा है किनारे में सब है।